का बना हुआ है। बीच में अशोक चिन्ह भी बना हुआ है।

कोको कोला थम्स-अप रखी हुई हैं। कुर्सिया रखी --

थोड़ी-थोड़ी बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं।

काफी सारे मोटर्स और साइकिल साइकल्स --